आगे का दरवाजा आप देख सकते हैं जिसमें लोहे का गेट है जो बंद आपको दिखाई देगा जिसका तिनका एक सारा है।

यहाँ चर्च का नजारा देख सकते है जिसके बाहर काफी लोग खड़े है जिसके ऊपर कुछ रिबनस लगे है बाहर के नज़ारे की और सजाते हुए जो सजावट का है उपयुक्त तरीका है।

जहाँ पर दो बस खड़ी है जिनमें से एक के पीछे लिखा है महारानी।

सीजर हेयर सैलून पूरा नजारा आप देख सकते हैं सभी चीज़ें और गोवर्नमेंट के साथ जिसमें तीन लोगो की जगह और एक सिटिंग लौंच है।

आइने में आप देख सकते है कोई है जो किसी के साथ कुछ कर रहा है लेकिन वो देख नहीं पा रहा--

यह एक रेस्टोरेंट का नजारा है कोफ़ी हाउस के रूप जिसे आप देख सकते से सजा हुआ है।

विद्यासागर पुस्तक केन्द्र थोक एवं खुदरा बिक्रेता--

वहां पे मर्द हमेशा मसाज करते है अपने आपको बेहतर दिखने के लिये --